पौधा जल्दी से बढ़ जाता है यहाँ पर ढेर सारे पक्षी आता है ये पक्षी पानी से अपना खाना ढुंड कर खाता है।

ए हमारे इलाके का एक मेला है यहाँ पर लोग पूजा कर रहा है यहाँ पर ढेर सारे पूजा के लिए वेदी बनाया गया है।

ए हमारे इलाके का एक कारखाना है | यहाँ ढेर सारे मशीनस है | यहाँ सुतो बनाने का मशीनस है | यहाँ साड़ी बनाने का काम चलता है।

यहाँ पर महिलायें पूजा में व्यस्तहैं ।

ये हमारे इलाका का एक फूल का दुकान है | ये दुकान सड़क के किनारे पे है | यहाँ फुटपाथ में एक फूल का दुकान लगाया जाता है | यहाँ पर ताजा-ताजा फूल --

ये हमारे इलाका का एक दुकान है यहाँ टोटो मिलता है यहाँ टोटो का सर्विस भी किया जाता है ये दुकान नया-नया बनाया गया है।

बैंक का वर्कर्स लोग बहोत ही हेल्पफुल है।

और कार्तिके का वर्णन किया जा रहा है।

ये हमारे इलाका का एक जिम सेंटर है ये जिम सेंटर बहुत ही बड़ा है इसके अंदर का डेकोरेशन बहुत ही सुन्दर है यहां पर ढेर सारे जिम का इंस्ट्रूमेंट भी है।

ये हमारे इलाका का एक सरकारी स्वस्थ्य केंद्र है यहाँ पर इलाका का लोगो का फ्री में चिकित्सा किया जाता है यहाँ पर दवाई भी दिया जाता है यहाँ पर --

यहाँ पर टूरिस्ट लोग आकर इस झरने के पानी से नहाता है ।

इस सैलून के वर्कर्स लोगो का एक यूनिफार्म भी है ये सैलून बहुत ही एक्सपेंसिव है।

ये हमारा इलाका का एक सड़क है | यहाँ हर वक्त गाडी स्टैंड रहता है | यहाँ इलाका का लोग इस सड़क को सफाई करता है | यहाँ नजदीक मे एक --

ये हमारे इलाका का एक रेल लाइन है यहां नजदीक में रेलवे प्लेटफार्म भी है यहां पर एक ओवर ब्रिज भी है इलाका का लोग रेल लाइन का --